ये एक बस स्टैन्ड है जहां पे बोहोत सारी बस लगी हुई है और बस लाइन मे लगी हुई है।

जो इसे सारे भगवान की पूजा कर रहे है वो दिया जला रहा है अगर बत्ती जला रहा है परसाद रखी हुई है।

और वो हाफ टीशर्ट और हाफ पेंट पहना हुवा है उसके दोनों पेर नदी मे पानी मे दुबे हुवे है उसके आगे बोहत बडा सा पहाड़ ।

और छात पे एक पंखा लगा हुआ है एक कैमरा भी लगा हुआ है।

अ पुरुष और महिलाए बेठ के जो है यह फुल तोड रहे है बोहत ही अच्छा और खुबसूरत नज़ारा है।

बोहोत बड़ा सा वन है वृक्ष है वृक्ष काफी हरे भरे हैं खुला आसमान है सभी आनंद ले रहे हैं।

और बोनट उठा के अंदर के समान को चेक कर रहा है और कार सफेद रंग की है और काफी अच्छी कार है।